मुझे इस तस्वीर में लाल कलर की एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

पास में एक पंडित जी अपना थैला लिए हुए दिख रहे हैं।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

पहाड़ से बहता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।

की नदी दिखाई दे रही है।

कई सारे बोर्ड भी दिख रहे हैं।

कई सारे लैंप और बोर्ड दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर में दो लड़कियां सेल्फी लेते हुए दिख रही हैं।

यहां पर गेंदे के फूल और अलग अलग फूल भी दिख रहे--

की देवाल और हम पे टंगी कुछ पिक्चर दिखाई दे रहें हैं।

यह दुकान के बोर्ड पर वीडियोकॉन पैनासोनिक सोनी मुझे दिख रहा है।

यहां पर बाहर कई गाड़ी भी है।

इस तस्वीर में एक किला दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट के अंदर--

एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

एक मशीन दिखाई दे रही है यहां कई लोग उसे मशीन में--